और छोटे मोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं एक दो बच्चियां भी खड़ी है जिन्हें हम देख पा रहे है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है एक बड़ा सा मैदान है उस मैदान में--

और अंदर उसके आगे हुआ अंदर कवि सीन दिखाई दे रहा कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ढेर सारे डेस्क बैंच रखे हुए है लाइन से आप टीचर को पढ़ाने के लिए सामने को बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहै है कि एक अ रूम है उस रूम में लकड़ी का बना हुआ है एक --

थरमस रखा हुआ है और थोड़ा बहुत कांच की भी झलक दिखाई दे रही है।

एक्स पास में रेड कलर का ऊपर में है वाइट कलर का दिए लिखा हुआ है साइड में --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

ऊपर आसमान भी हमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि बहुत बड़ा सा मॉल है उसमे सारे कपड़े और उसमे ढ़ेर सारे रैक में--

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है एक बहोत बड़ा सा मॉल है उसमे ढेर सरे कपड़े और उसमे ढेर सरे आदमी --

ऊपर आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

अगल - बगल बड़े - बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने छोटा - छोटा घास भी हम देख पा रहे है।

ऊपर आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम देख पा रहे है की एक बोहत बड़ी सी नदी है उस नदी में बहुत अच्छा साफ पानी है और उसमें ढेर सारे नाव चल रहे है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है एक नदी का विव है जिस में पानी है उसके ऊपर एक ब्रिज गया हुआ है।

पहिया भी निकले हुए है और व्हाइट कलर की कार है और उसके बगल में--

वे छोटे छोटे घास भी है और कई कार खड़ी है उधर और बस भी जा रही है एक आदमी बैग टांग के जा रहा है।

गेट के बगल में बहोत सारे बंबू लगे हुए है जोकि बढ़ रहा है।

सामान रखे हुए है रैक बना हुआ है रैक में सारे सामान सेट करके रखे है उसमे ऑइल है क्रीम भी है शैम्पू साबुन--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

भीगे देखे फूल टांगा हुआ है जो व्हाईट कलर का है वो बहुत सुंदर है उसमे कहीं --

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि एक बहोत समय आया उस मैदान में कई बच्चे आदमी गेम खेल रहे है और--

यहाँ पर हम देख पा रहे है की एक बोहत बड़ा सा मैदान है उस मैदान में कई बच्चे कई आदमी गेम खेल रहे है।

खिड़की भी है और लाइट जल रही है और जो हॉल है उसका दिवार व्हाईट कलर से पेंट है निचे टाईल्स लगे हुए है।

लूडो का सबब बना हुआ है और हाउस बना हुआ है ऊपर आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है जो स्कूल है वो भी येलो और--

रूट के बगल में जमीन दिखाई दे रहा है जहाँ पे पानी की वजह से कीचड़ हो गया है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं एक रोड गया है रोड के किनारे पे दो फ्लोर का एक मकान है जिसके नीचे में एक शॉप है जिसमें लिखा है माँ दंतेश्वरी ऑटो --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

एक बंबू पकड़ के और वो शर्ट पैंट पहना हुआ है।

यहाँ पर हम देख पा रहे है की एक किराना का दुकान है जिसमे सामने सब बिकने में सारे सामान रखे है नमकीन--

चॉकलेट है सब और एक वेट करनेवाला मशीन भी है। ऊपर सारे सामान टंगे हुए है जिसमे शैम्पू है मसाले है।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

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि एक सामने घर है उस घर के सामने एक कुटिया जैसा बना हुआ है जिसमे चार --

ये वाला ऑरेंज और यल्लो कलर से पेंट है।

और मिट्टी भी हम देख पा रहे है ऊपर साइड में आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है।

और मिट्टी भी हम देख पा रहे है ऊपर साइड में आसमान भी एकदम साफ़ दिखाई दे रहा है।